और शैडो दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक रास्ता दिखाई दे रहा है।

और एक येलो कलर का है।

और इसका साइड में बहुत सारे जंगल है।

और पीछे में एक ग्रीन पर्दा है।

और एक टीना घर है।

यहां पे एक मार्कित है।

जिम के अंदर में बहुत सारा लाइट बल्ब है।

यहां पे एक बड़ा सा मॉल दिखाई दे रहा है।

अंदर में बहुत सारा लाइट बल्ब भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक जिम दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक छोटा सा दुकान दिखाई दे रहा है।

तीन ठो घर दिखाई दे रहा है।

रूम का अंदर में तीन ठो चेयर दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक दुकान दिखाई दे रहा है।